लग रहा है कुछ वाइट कलर है जहाँ पे तौल रहे है शायद ये फ्लावर्स की मंडी दिखाई दे रही है एक स्टूल रखा है उसके पास में कुछ बोरे भी रखे हुए है वह भी --

बसेस खड़ी हुई है कुछ लोग गाडी में है एक कपिनटोम आइसक्रीम की शॉप है मोबाइल की दूकान दिख रही है बहुत सारे टू व्हीलर्स रखी हुई है।

ये उनका रोल भी लगे हुए है काफी सारे वायरिंग जा रहे है पत्र का शैड बना हुआ हैं।

एक बिल्डिंग का काम चल रहा है जहाँ बड़ाई हो रही है बड़े से बिल्डिंग बन रही है अपार्टमेंट बन रहा है जहाँ पर तार से फ्लोअरिंग की जा रही है और --